जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं यह एक मस्जिद का फोटो दिखाई दे रहा है।

जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। यह एक फोटो मार्केट का फोटो है। जिसमें छोटी-छोटी दुकान दिख रही है रोड दिखाई दे रही है साफ सुथरी।

इस फोटो में आपको फ्लावर शॉप दिख रही है। जिसमें बहुत सारे फ्लावर रखे हुए गेंद के फूल दिख रहे हैं ऑरेंज और येलो कलर के।

गुलाब के फूल भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में आपको एक रेस्टोरेंट का फोटो दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में आपको किसी मंदिर का फोटो दिखाई दे रहा है। जिसमें भगवान की मूर्ति विराजमान हैं।

पैदल चलने वाली साइकलिंग की मशीने रखी हुई हैं डंबलस रखे हुए हैं।

और के नीचे एक टाइगर दिखाई दे रहा है जोकि बैठा हुआ है।

जिसमें टीन का शेड लगा हुआ है।

जोकि बहोत ही व्यू अच्छा दिख रहा है हा।